यहाँ पर गाड़ी वगैरा खड़ा की गई है जिसमें से आइना दिख रहा है | यहाँ पर खंभे भी हैं |

यह एक कार का शोरूम है जिसमें एक कार को लटका कर उसे ठीक किया जा रहा है ।

यहाँ पर मिट्टी का देर भी रखाया गया है इसमें पाइप भी लगा हुआ है |

यहाँ पर बड़े बड़े चट्टानों से पानी बहकर आ रहा है यहाँ पर बड़े-बड़े पेड़ हैं जो --